यहां एक बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है इसके ऊपर पीला कलर का लाइट जल रहा --

काउंटर के पीछे एक व्यक्ति रेड कलर का शर्ट पहन के खड़ा है एक व्हाईट कलर का शर्ट पहन के खड़ा है काउंटर के दूसरी ओर--

मल्टीपल कलर से जो है से इसको--

और इस जंगल में बड़े बड़े चट्टान दिखाई पड़ रहे--

और यहां पर बालू का ढेर लगा हुआ है।

किनारे टीन का एक घर है।